और बीच में एक स्टेचू बना हुआ है और एक खम्बें पर दो माइक लगे हुए हे ।

यहां पर सीमेंट की कुछ चद्दर दिखाई दे रही है और कुछ लोहे की चद्दर दिखाई दे रही हे ।

जिसके की पीछे कॉफीयो के मग रखे हुए है और पीछे एक कॉफी मशीन रखी हुई है।

पुलिस स्टेशन का बोर्ड लगा हुआ हैं।

यह एक टोकीज हैं जिसके सामने बहुत सारी मोटरसाइकिल और कार और मारुति खड़ी हुई है और यहाँ पर एक पेड़ भी दिखाई दे रहा है और कुछ आदमी भी खड़े हुए हैं।